एक व्यक्ति सड़क पर झाड़ूु मरता हुआ नज़र आ रहा है जिसके साथ ही में दो तीन ऑटो खड़े है तथा पास ही में--

पूंछ भी लगी हुई है तथा उनके साथ ही ये एक दूसरे पर पड़े है।

खड़े है तथा उसके पीछे नीले हरे रंग की लाइटिंग भी--

उसके साथ कुछ चट्टानें है कुछ पत्थर नीचे गिरे हुए है तथा कुछ पत्थर चट्टानों पर मौजूद है उसके --

साथ ही में थोड़ा सा काला रंग भी मौजूद है हरे रंग के वृक्ष काफ़ी अच्छे नज़र--

भूरे रंग की इमारत नज़र आ रही है जिसके साथ ही एक मंजिला घर भी नज़र आ रहा है पिछे की ओर --

समान रखा हुआ है और ऊपर पंद्रह लिखा हुआ है जिसके साथ ही मै एक और दुकान भी है।

आ रही है ऊपर बिजली की तारे दिखाई दे रही हैं और आसमान भी साफ दिखाई दे रहा है जिसके साथ ही दो --

तीन लोग भी नजर आ रहे है और पीछे की तरफ वृक्ष भी लगाये --

आसमान नज़र आ रहा रहा है और हाथी के मुँह पर लाल रंग लगाया--

एक व्यक्ति निले रंग की जैकेट तथा निले रंग की जीन्स पेहने हुए खड़ा है तथा निचे--

जिसके पीछे कुछ वृक्ष भी नज़र आ रहे है पिछे की और आसमान भी दिखाई दे रहा है और निचे--

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान परिवार कल्याण संस्थान पटना लिखा हुआ हैं जिसके निचे--

ऊपर हरे रंग का बोर्ड लगाया गया हैं जिसके ऊपर हरे शब्दो में वैभव लिखा हुआ है।

एक व्यक्ति हरे रंग की कमीज़ पहने हुए लोहै की ग्रिल्स के साथ खड़ा है जो की पिले भूरे हरे तथा--

ए रखे हुए है| पहले दो सिरहाने सफेद दूसरे दो अलग रंग के तथा अगले तीन अलग रंग के--

पीला रंग किया हुआ है और साथ ही में एक गोली सी आकृति भी नज़र आ रही हैं।

घास नज़र आ रहा है और कुछ घोड़े तथा उस पे बैठा एक छोटा लड़का का भी नज़र आ रहा है।